चों का पार्क है। यहाँ पर बहोत सारी दिखाई दे रहीं हैं। ये एक फर्श बिछा हुआ है।

जा रही है। एक रिक्शा खड़ा हुआ है जीपें कारे --

जिसमें ये दो बड़ी - बड़ी कुर्सियां लगी हुई हैं। नीचे फर्श है। लाइटें दिखाई दे रही हैं।